यहाँ पे बड़े-बड़े कार्टून्स है डस्टबिन भी यहाँ पे रेड कलर के ऊपर यहाँ पे दिख लहा है पीछे सामान--

औल यहाँ लाइट के बड़े-बड़े फोकस मारे गए और वायर दिख रहे है औल यहाँ पे अंदर तेल के डब्बे है खाने के आइटम्स है कुलकुले है चिपसा हैं।

चावल राशन घी दूध घी सभी यहाँ पे जूस के बोटले भी इस दुकान में यहाँ पे मिलते हैं।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

और यहां पे बहोत सारी एल_इ_डी लाइट चालू है फयान्या फैन है नीचे मैट बिछाए गए हैं।

और यहां हरी भरी घास रखी गई है यहां पे स्टेपिस बनाए गए है बड़े बड़े बिल्डिंगा दिख रहे हैं आजू बाजू--

औल यहां पे जाली ली गई है और यहां पे टाइल्स बिछाए गए हैं और वहां सामने--

यहां पे दलवाजा खुला है वहां पे सामने एक लैपटॉप है जिरोक्स सेंटल की यहां पे लैपटॉप यहां बैठे हुए --

यहाँ पे बहुत शारे लोग आए हुए हैं लोड है और यहाँ बाजू मरे हुए लोगों को जलाया जा लहा है.

चेयर्स रखे हुए हैं यहाँ पे पी_ओ_पी किया गया है फैना है लाइटा चालू है ब्लू कलर की है एल_ इ_ डी लाइट चालू है.

ये एक रेलवे स्टेशन या बैंक दिख रहा है यहाँ पे बहुत शारे एल_ई_डी लाइट चल रही है फैना हैं ट्यूबलाइटा हैं और यहाँ--

लेडीज जेंट्स बच्चे सभी लाइन में लगे हुए हैं और यहां पे बहुत सारे काउंटर्स को बनाया गया है और यहां पे भी छोड़े गए हैं।

फुलांके के झाड़ा भी लगाए गए हैं यहाँ पे शीधा रास्ता भी यहाँ पे दिख रहा है टै टाइल्स भी बिछाए गए हैं.यहाँ

घड़ी लगी हुई है राइट साइड में और पर्दा माला गया है ग्रीन कलर का यहां बहुत सारे वॉल के ऊपर फोगे धोखे लगाए गए हैं रेड यहां पर ब्लू कलर का यहां पे पाइपा भी--